यह किसी शॉप का है यहाँ पे केक का ओनर भी है |

इसका शेप बनवाए हुए है इस होटल में या रूम में ए.सी. का भी सुविधा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा हैं रेड कलर --

यह फोटो एक बेकरी का है यहाँ पे लोग कुछ लोग अपना केक का आर्डर किए तो लेने आए हुए है।